पत्थर लगे हुए हैं और सामने एक बड़ा सा घर बना हुआ है आजू-बाजू पेड़ हैं।

यह एक नदी है नदी के आजू-बाजू बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और चार ए_सी लगे हुए हैं विंडो ए_सी।

यह एक घर है घर पे अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है घर के मेन में दो दरवाजे दो खिड़कियां हैं।

पुष्टे के शो पुष्टी के डब्बे रखी हुए हैं।

उसके बाजूमें एक मल्टी नई बनी हुई है और--

इसके बाजू में एक खजूर का पेड़ लगा हुआ है। चार पांच छे बाईके खड़ी हुई है।

करीमा नगर डेरी है डिपार्टमेंट डेरी --

इस सलून में जेंट्स लोग आते होंगे कटिंग करवाने के लिए।

और दूल्हा माला डाल रहा है गले में दुल्हन के।

यह एक टनाटन ढावा है ढावे का नाम टनाटन ढावा है इसके सामने एक वैन एक फोर व्हीलर कार --

और एक लेडीज जा रही हैं और एक बाइक पे एक लड़का बैठा हुआ है और पासी में एक मल्टी बनी हुई है जो बहुत बड़ी है।

एक लड़का है लड़के ने कटोरा कटिंग करवाई है।

यह एक छोटी सी नदी है नदी के आजू-बाजू बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

ठेलों के ऊपर पन्नियां चढ़ी हुई है एक पर लाल एक पर ऑरेंज एक पर पीली --

जह एक बहुत बड़ा मैदान है मैदान पर बहुत ही खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं।

और इधर जीनो के ऊपर चढ़ के शायद कोई बैंक है।

और दो मजदूर पीछे हाथ रखकर खड़े हुए हैं एक मजदूर काम कर रहा है।

वो यहां ए टू जेड की एक सींदली और--

ओग रही है एक आदमी आ रहा है कथे कलर की टी_शर्ट --

तालाब के उस साइड बहुत पहाड़ बने हुए हैं।

महाराष्ट्री दुर्घटना राजधानी औरंगाबाद मध्य आक्लिस स्वरस स्वागत --

लैंप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और यहां पर जेंट्स और लेडीज और बच्चे खाना खा रहे हैं।